व्यक्ति का कपड़ा का रंग सफेद है एवं दुकान के अंदर एक कुर्सी है।

एवं मंदिर का रंग खूबसूरत है और आसमान साफ है।

यह दृश्य एक भारतीय स्टेट बैंक की दिखाई दे रही है।

एवं दुकान के आसपास कुछ गाड़ियां लगी हुई है।

एवं सीलिंग पे सफेद रंग का लगा हुआ है।

और इमारत कुछ वर्ष पुरानी है इसका रंग चला गया--

दृश्य में एक प्राचीन इमारत दिखाई दे रही है।

यह कुछ विशाल पत्थरों दीवारें और ढांचे से बनी हुई है।

यह दृश्य एक जंगल की है यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य में एक भगवान दिखाई दे रही है एवं बोर्ड भी लगी हुई है।

बिरसा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लिखा हुआ है एवं भवन की ऊपरी हिस्से में रंग बिरंगे झंडे लगे हुए हैं।

और गाय का बगल में भी एक गाय हैं एवं दीवाल का रंग सफेद है।

एवं एक बड़ा सा प्लाई बोर्ड रखा हुआ है एवं कमरे का फर्श का रंग भूरा है।

इमारत साफ सुथरा और अच्छा है एवं जिसमें एक गेट और एक छोटा सा बगीचा है।

एवम् एक ग्लास रखे हुए है। दिवाल का रंग सफेद है और दरवाजे का भी सफेद--